और बाहर बाईकें खड़ी हैं एक्टिवा खड़ी है।

ये सारे बच्चों ने ड्रेस पहन रखी है डांस वाली और एक खड़ी है वो जा रही है।

दीवार पे तस्वीरे लगी हुई हैं और सोफा है उसपे भी पीलो है और टेबल सा रख रखा है छोटा सा उस पे गिलास रखा हुआ--